सामने एक बेड लगा हुआ हैं जिसमें सफेद कलर का गद्दा लगा हुआ है और --

काफी सारे टेबल दिखाई दे रहे--